बोहोत सारे पर्सन आदमी बेठे हुए राईट साइड में टेबल और कुर्सी लगा हुआ है।

पॉप का दुकान है जिसमे कल किसी ने टेडी बेयर रेक सजाये हुए रखे है लेफ्ट साइड में निचे में तीन कुड़सीया रखी हुई है पिली हरी और नीली कलर की उसके जस्ट बगल में --

किसी गराज का तस्वीर हैं जिसमें काफी सारे स्कूटर्स बाइक खड़े हैं।

अंडा है फिर दोसो बीस है फिर ढाइसो है उसके बगल में एक--

काफी सारा पिलर है उसके जस्ट बगल में रोड है रोड के उस साइड बाउनड्री और ग्रील किया हुआ है ग्रील के बगल में दो --

काफी बड़े बड़े पेड़ है पेड़ के उस साइड एक काफी खूबसूरत सा घर है घर के बगल में एक गार्डन है।

यह एक थिएटर है जिसके बगल में पब्लिक कन्वेंशन --

इसके बगल में काफी बड़ा एक बैनर लगा हुआ है डिजिटल --

ये इस तस्वीर में एक पाथ दिख रहा है उसके राईट और लेफ्ट साइड गार्डन --

ये एक दुकान का फोटो है जिसमें दुकान के आगे काफी सारे--

राईट साइड में काफी बच्साचे खड़े हुए देख रहे है जुले के ऊपर एक करे जेसा इमेज बना हुआ है जिसका रंग ब्लू है।

कुछ लोग पे खड़े होक बैठ के भी देख रहे है उनके जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है।

ये किसी गार्डन का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे कोई सा गार्डन है जिस पे काफी सारे फ्लावर्स लगे हुए है गार्डन के उस साइड --

लाइट लगी हुई है और उसके बगल में लेफ्ट साइड्स में दो बड़े बड़े पेड़ है।

ये किसी शॉप का दुकान है जिसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में रैक में काफी सारे सामान रखे हुए हैं और बीच में बोरे के ऊपर--

असुके पास पेड़ लगे हुए है पेड़ के आगे--

ये किस एयरटेल कंपनी का बोर्ड हुआ है।

ये वेस्लिंस वगेरा भी रखे हुए है बुक्स रखे हुए पेन कॉपी भी रखा हुए है।

और बच्चे बैठकर सुन रहे हैं। लेफ्ट साइड में एक बहोत बड़ा गेट है।

ये सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग के जस्ट सामने रेलिंग पे--

काफी सारे गमले रखे हुए हैं गमले में काफी सारे फूल हैं और एक अंटी पीले रंग की सूट पहन के खड़ी है।

एक दीवाल पे भी बोहोत इसमें भी कूलर भी लगा हुआ है दीवाल पे काफी सारी वायरे लगी हुई है।

काफी सारी एम्बुलेंसेस लगी हुई है और राइट साइड में काफी बड़े।

एक सूखे पेड़ खड़े है लेफ्ट साइड में एक हरे पेड़ खड़े है यह बिल्डिंग बोहोत पुराण है ।

य बोत बड़ा पहाड़ है जिसके निचे बोहोत सारे लोग--

बड़े हुए हैं उसकी बगल में काफी सारे सामान बचे हुए है यहां पे दो पाथ यहां पे रहने के लिए राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लाइटिंग पिल्लर लगा हुआ है।

जिस पे काफी सारे मिरर्स लगे हुए हैं यहां पे तीन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे एक हॉस्पिटल अभिलाषी हॉस्पिटल और बिलासी हॉस्पिटल के अलग अलग तीन बोर्ड लगे हुए हैं।

ये जिम का फोटो है जिसमे एक पन्दा पोसिंग कर रा है।

उसके बगल में काफी बड़ा एक जंगल है जंगल के पीछे एक स नदी है।

एकिन किये हुए है आगे में एक सेफ खड़ा है जो काम कर रहा है।

लाइन के आगे बोहोत सारी गाड़िया लगी हुई है स्कूटर बाइक और साइकिल एक आंटी हरी साड़ी पहन के वह से जा रहे है ।

यहा एक योगा का क्लास चलरा है जिसमे टीचर सामने बेठे--

काफी सारे लोगो को योग-योगा करा रही है जो की--

और सामने में कब से टेबल्स और चेयर लगे हुए है।

डॉल्स पे कपडे पना के रखे हुए है काफी सारी चेयर पे आंटिया बेट के कपडे--

लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ ही जो बोहोत खुबसूरत है बाकि रेक में काफी सारे सडीया और सामान टंगे हुए है।

दो छोटे छोटे पेड़ है राईट साइड भी काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

यहां पे लाइटिंग टावर लगी हुई है लाइटिंग टावर के बगल में छोटा सा गेट है जो की एंट्रेस गेट लग रहा है।

लेफ्ट साइड में वाइट और पीले रंग के काफी बोर रखे हुए है जिनमे--

दो तिन मजूर रेगुलरली बोर को उठा के पिकप में लोड कर रहे है।

ये एक पुराना सा बिल्डिंग है जिसमे तीन घर है इसके लेफ्ट साइड एक टावर लगा हुआ है इसके जस्ट सामने में एक साइकिल और --

इसके जस्ट सामने एक ड्रम ग्रीन कलर का रखा हुआ है बिल्डिंग के उस साइड काफी सारे पेड़ लगे हुए है।

तीनो बेड के बगल में रैक रखा हुआ रैक के ऊपर काफी सारी समान है।

एक बोहोत बड़ा स्काई ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ है जो दिखने में काफी खुबसुरत है।

ये एक बोहोत बड़ा लग्जिरियस राइब नाम का--

लेफ्ट और राईट साइड से दोनों साइड से खंडर टुटा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें दो बड़े बड़े नारियल्स के पेड़ दिख रहे हैं और उस नारियल्स के पेड़ के नीचे एक्सेल का बोर्ड लगा हुआ है उसके जस्ट सामने--

यहाँ एक क्लब ए_टी_एम जिसमे एक अन्दर ए_टी_एम भी निकाल रहे है उसमे दुसरे व्यक्ति हाथ में हेलमेट ले कर --